तस्वीर मा जी हम देख सकदौं कि यखमा हम एक मंदिरेन दिखेण लग्युं मंदिर का सामने हमें एक दरिन दिखेण लगीं लाल रंग की तखि हमें मंदिरा का भैर फुणा छकि सारा लोगन दिखेण लग्यां।